उधर साइकिल वाले हैं मोटर साइकिल वाले हैं बहुत सारे आदमी हैं यहाँ। आ उधर एक कार भी लगी हुई है जो रोड के साइड में है।

ये बहुत बड़ी नदी है।

नदी में बहुत सारे नाव है।

जो उसमे बहुत-बहुत सारे आदमी नाव पे भी बैठे हुए है बहुत सारे आदमी नहा भी रहे है एक बास भी है इधर परती है इधर रोड है उधर घर द्वार भी है पेड़-पौधे भी---